यहां पे बच्चे सब खेल रहे हैं और यहां पे हमेशा बहुत बच्चे आते हैं और खेलते हैं और यहां पे --

यह एक दुकान है। यहाँ से बहोत सारे क्रीम पाउडर मिलते हैं और यहाँ पे बोहोत सारे लोग जिम पाउडर खरीदने भी आते हैं और --